सामने एक मंदिर है और जिसकी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेशन की है मंदिर का दरवाजा है बहुत बड़ा और जिसपे लाइटिंग है ब्लू और येलो कलर की और बहुत सारी लेडीज है खड़ी हुई है जेन्ट्स खड़े हुए हैं।

पानी का ट्रंक रखा हुआ है और बस बड़े-बड़े भगोना और बाल्टी रखी हुई है और बेड बजे बिछे हुए जिनपे सामान रखा हुआ है ऊपर टीन है।

और साइड से एक बहोत बड़ा मेदान गार्डन है और साइड से बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए है सड़क है जिसका कलर ग्रे है और एक टेम्पो जा रहा है जिसमे एक टेम्पो वाला और साइड से एक आदमी --

सामने एक बहोत बड़ा मन्दिर है जिसमे बहोत सारी भीड़ लग रही है बहोत सरे लड़कियां और जैंट्स और बच्चे खड़े हुए हैं।

सामने एक बहुत गार्डन है और जिसमें बहुत बड़ी-बड़ी घास लगी हुई हैं साइड से पेड़-पोधे हैं बहुत सारी बच्ची जो फिसल रहें हैं।